या फणा कुछ लोग भीन दिखेण लग्यां कुछ बस पर छा चण लग्यां उंडे फणि हम तें कुछ बड़ी बड़ी इमारत छान दिखेण लगीं जणे हम ते कुछ खिडकी दिखेण लगीं पार फुणा हम तें एक जंगल दिखेण लग्युं जफणा बहोत सारा डालन।

ये चित्र मा हमते एक बड़ु टेंट दिखेण लग्युं जै पर हम तें नीलू अर सफ़ेद रंग च दिखेण लग्युं नीसाण फणि हम तें हरी दरी दिखेण लगीं जफणि बहोत सारी कुर्सी अर मेजन लगीं जफणा हम त बहोत सारा लोग छा दिखेण लग्यां उंडे बिटि हम ते एक डी.जे वाला दिखेण लग्युं जमा कुछ नौनियाल भी बैठ्यां।

ये चित्र म हम ते एक बड़ु स्टेशन दिखेण लग्युं जखमा हमतैं सोफा दिखेण लग्युं जैका उंडे-फंडे कुछ लैट लगीं पैथर बिटि हम ते एक जगह दिखेणी जखम कुछ कपड़ा लग्यां रंग बिरंगी एंच फण कुछ फूलन लग्यां उनै बिटि हम ते मंडस्यारू दिखेण लग्युं पिछाड़ी बिटि हम तें कुड़ु दिखेणु।